यहाँ पे जो भी है ना हमको बोलने के लिए लम्बा भी टाइम मिलता है मै बोलती इतना अच्छा चीज दिखा रहे है आपलोग कैसे थैंक यू बोले कैसे सॉरी बोले कैसे शुक्रियादा करे लेकिन जो भी है यार बहुत --

अरे वह कितना अच्छा चिड़ियालोग है यहां पे और भी जानवर दिख रहे है कितना एक पैर पर खड़े हो जा रहे है कितना दो पैर पे खड़े हो रहे है कितना अच्छा क्वालित से बने रखे है ये लोग एलोवेरा खा रहे है लग तो रहे है एलोवेरा खा रहे है लकड़ी के ऊपर खड़े है।

और ये देखिये क्या है उधर भी घर है इधर भी घर है और ये जो पौधा बहुत अच्छा नजर आ रहा है ये लग रहा शाम के टाइम होने वाला है लेकिन कितना भी होने--